इसके आगे एक टेंट जैसा भी है और काफी लोग बैठे हुए है इसम --

निचे ब्लैक जीन्स पीना हुआ है शूज भी पीना हुआ है ।

जिनको वाइट कलर की दो टी-शर्ट जैसी पहनी हुई है नीचे धोती भी पहनी हुई है ।